कम्प्लीट वूडन स्ट्रेचर किया हुआ हैं काफी खूबसूरत ब्राउन कलर के और वाइट कलर के इसमें सोफा एडजेस्ट किये--

ये ब्रिज हैं जहां से अ पानी दिख सकता है बहुत ही अच्छ पानी जो है एकदम ब्राउन कलर का नजर आ--

ये गाये हैं जिसको चारा दिया जा रहा हैं और वो चारा अपना खा रही हैं ग्रीन कलर का घास उसे दिया जा रहा है हरा भरा घास तो वो खा रही हैं ब्लैक कलर की गाय हैं उसको रिस--

और ये स्कूल रेस हो रही हैं और तीन बच्चे इसमें दौड़ लगा रे हैं